और यहां पर बहुत सारी मर्करी जो है ऊपर सीलिंग में चम चमा रही है और कुछ काले कलर का पाइप जो है--

तक मैं देख पा रहा हूं यह रात का समय है और रात में यह एक पार्क का नजारा है।

डैश वन टू वन शारदा पूरी एंड_डी फिफ्टीन ।

शो प्लांट भी नजर आ रहा है यह दिन का मौसम--